इस फोटो में एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिस कार का रंग ग्रे है।

इस फोटो में सामने की साइड नीले रंग का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

पीछे कुछ आइसक्रीम रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

तथा कुछ चॉकलेट भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यह फोटो किसी टैल वाले की दुकान से लिया गया है इस--

इस फोटो में सामने की साइड फलों की दुकान लगी हुई दिखाई दे रही है।

झरने में कुछ व्यक्ति नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके फेस को ब्लर किया गया है।

यह फोटो किसी कपड़े की दुकान से लिया गया है जिसमें सामने अलग अलग बॉक्स में कुछ कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो किसी पर्दे की दुकान से लिया गया है जे--

पर्दे काई रंग के हैं कुछ पर्दे हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं ऊ --

यह फोटो किसी एयरपोर्ट से लिया गया है जिसमें एक प्लेन खड़ा हैं।

इसमें एक व्यक्ति पार्क के बीच में जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

गेट के बराबर में एक मनकान बना हुआ है।

इसमें पौधा लगा हुआ है और एक भगोना रखा हुआ है।

यह फोटो किसी पिज़्ज़ा प्वाइंट से लिया गया है।

मैदान में छोटा छोटा हरा हरा घास उगा हुआ है।

तथा गर्दन को पैरों के पास में झुका रखा है पीछे के साइड कुछ मैट भी बिछे हुए हैं।

इन बॉक्स के ऊपर एक किताब रखी हुई दिखाई दे रही--